तीन दरवाजे लगे हुए हैं।

इस घर पर लाल कलर हो रखा है।

और किताबों के ऊपर एक जग रखा हुआ है और उसके पीछे एक मेज में कुछ बर् प्लास्टिक के सामान रखे हुए हैं।

और एक छत में पंखा भी लग रहा है।

और साइड में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है।

और इनवर्टर बैटरा भी रखा हुआ है।

में एक पढ़ने का कार्ड भी पड़ा हुआ है।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

और छत में बहोत से पंखे भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक महिला बहोत सुंदर कपड़े और गहने पहेन कर नृत्य कर रही है।

एक बहोत बड़ा घर है और घर के सामने लोहे के खंभे खड़े हुए हैं।

यह एक स्कूल है इस स्कूल में बहुत से बच्चे बाहर खड़े हुए हैं।

बटन भी और साइड में बहुत सा सामान भी रखा हुआ है।

और कुछ प्लास्टिक की बोतलें भी रखी हुई हैं।

और इनके नीचे तीन दरवाजे भी लगे हुए हैं।

और व्हाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है।

और वहां कुछ बड़े बड़े पेड़ भी खड़े हुए हैं।